बुक ए खरीदने के लिए इकट्ठा हुए हैं।

यह बहोत बड़ी किराने की दुकान है।

इस दुकान में अलग-अलग रो बने हुए हैं।

आश्रम की खिड़कियां खुली हुई हैं।

साइड में और भी मकान है जिन मकानों के पास लंबे-लंबे पेड़ हैं।

को एक बच्चा स्लाइड पे से स्लाइड कर रहा है।

एक शेड डला है जिसकी शेड में--

रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन है।

और यहां पर फेन भी बंद है।

रिसेप्शन एरिया काफी साफ-सुथरा है।

यह एक शादी हाल की पिक्चर है।

जिसमें अलग-अलग कबर्ड बने हैं।

सामने एक बड़ी सी टेबल भी दिखाई दे रही है।

और एक येलो कलर के बोर्ड पे वाइप्ऱो लिखा है।

जहां कांच का ये शोरूम बना है।

ये बहुत बड़ा डांस अकेडमी का हॉल है।

यहां पर डांस परफॉर्म किया जाता है।

बाहर एक ब्रेट कलर की बुलेट खड़ी है।

एकऔर गाड़ी भी खड़ी है।

बहुत मोटे-मोटे टायर बहुत सारे आगे पीछे लगे हैं।

वो फॉलोअर्स काफी खूबसूरत लग रहे हैं।

ये जिम की मशीन का पिक्चर है।

दो लोग फूल खेल रहे हैं।

पूल गेम में जो बॉले हैं टेनिस की वो बहुत सारी हैं और कलरफुल भी हैं रेड येलो ब्लू कलर की है।

ये एक प्लेट में ढोसा रखा हुआ है।

साइड में दो स्टील के ग्लास भी रखे हुए हैं।

यहां पर एक जनमाश बिछी हुई है।

एक ओर बेना टंगा है जहां पर रजाय कंबल फोर्टी परसेंट ऑफ लिखा है।

यह जंगल काफी घना है और हरियाली भी बहुत ज्यादा है।

घर के आगे साइड खेत जैसे बने हैं।